एक मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

यह दुकान फर्नीचर की दुकान है।

मुझे इस चित्र में एक--

दिखाई दे रहे है इस नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर--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

उस शोरूम में शेल्फ के अंदर कुछ टायर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस हॉल में कुछ चेयर्स लगी हुई है।

उन चेयर्स के पीछे लिखा है रिसेप्शन --

एक पार्क दिखाई दे रहा है उस पार्क में--

एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं इस दुकान में लेडिज --

मुझे इस चित्र में एक ग्राउंड नजर आ रहा है इस ग्राउंड में --

उस नदी के बीच में एक बोट खड़ी है।

मुझे इस चित्र में एक हाइवे नजर आ रहा हैं।

एक सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है यह सर्विस सेंटर --